सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो क्रीम कलर की है और जिसकी ऊपर बहुत सारी सर्किट है।

लगे हैं और ऊपर रंग बिरंगे लाल पीले--